इसमें एक लोहे का रेलिंग भी लगा हुआ है।

पीछे एक ढाबा भी बना हुआ है और ऊपर एक कांच का खिड़की भी बना हुआ है।

एक सोलर पैनल का पेड़ भी लगा हुआ है और एक लाइट भी लगा हुआ है।

सामने बहुत सारी कुर्सियां भी डाला हुआ दिख रहा है।

यह एक मार्केट का फोटो है जिसमें बहुत सारा सब्जी रखा हुआ है।

क्लीनिक का फोटो है जिसमें बाहर फूल माला लगा हुआ है।

नीचे फर्श भी टाइल्स लगा हुआ है।

इसमें कारपेट हरा कारपेट भी बिछा है।

बिल्डिंग का फोटो है जिसका कलर सफेद है।

और इसमें बहुत से दरवाजे लगा हुआ है।

एक दरवाजा भी लगा हुआ दिख रहा है और कुछ लड़कियां भी बैठा हुआ है।

और लेंटर के ऊपर चद्दर भी डरी हुई है।

इस मैदान में एक इंजन वाली लेलगाड़ी रखी हुई है।

एक लोटा दिखाई दे रहा है पीछे तरफ दो लोटे रखे हुए हैं।

यह फोटो एक औरत का फोटो है जिसमें वे हरि साड़ी पेहन के डांस कर रही है।

सामने एक कांच का बड़ा सा खिड़की भी बना हुआ है।

एक कुर्सी पे बैठा हुआ है और चप्पल भी दिख रही है।